और यहां पे मैन रोड है मैन रोड पे कोई ऑटो और कुछ फोर व्हीलर हमे देखने को मिल र --

यहां पे बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई है खड़े होने की और यहां पे आराम से बहोत प्यारी जगह बनाई गई है।

यहां हम देख पा रहे हैं बहोत बड़ा ऑफिस है यहां पे ऑफिस में आप देख सकते हैं काफी सारे पंखे लगे हुए हैं यहां पे।

यहां आप देख सकते हैं वन द बैकरी बैकरी बैकरी बड़ी प्यारी है देख सकते हैं सामने इसका--

और ये सब भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं सामने हम देख पा रहे हैं मंदिर के जस्ट पास भी कुछ जेंट्स खड़े हैं सामने --

ऑफिस है यहां पे जो काफी प्यारा है आप यहां देख सकते है ये जेंट्स यहां खड़ा है जोकि रंगोली बना रहा है।

यहां हम देख सकते हैं हमें बहोत ही प्यार एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में आप देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते है यहां पे गार्डन है गार्डन काफी प्यारा और काफी बड़ा सारा है आप खुद देख सकते है।

यहां आप देख सकते है यहां पे सामने एक गेट बना हुआ है गेट के पीछे हम देख पा रहे है बड़े बड़े बहोत बड़े बड़े पेड़ है।

गार्डन काफी बड़ा सारा है गार्डन में बहुत अच्छी धूप आ रही है यहां पर कुर्सी लगी हुई है आप देख सकते कुर्सी के पास एक बड़ा सारा पेड़ भी है।

बट इस शॉप का शटर बंद है आसपास आप देख सकते हैं छोटी सी एक केबिन भी लगी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे प्लेट है प्लेट में पनीर टिक्की वगैरा यहां पर रखा गया है।

अंदेश्वर जी का दिखाई दे रहा है जोकि काफी पुराने टाइप का बना हुआ है बाहर कुछ बाइक खड़ी हैं।

कार हमें यहां देखने को मिल रही है भैया यहां पे अपना काम कर रहे हैं और सामने दो भैया कुर्सी पे बैठे हैं।

जो काफी प्यारा बना हुआ है उसके बाहर ही गार्डन है गार्डन में बहुत अच्छी हरियाली है कुछ पहाड़ियां हैं।

यहां पे पन्नी में पैक किए गए कुछ कपड़े हैं आप खुद देख सकते हैं कलरफुल कपड़े है ये यहां पे बहोत सारे रखे गए हैं तरीके से जमाए गए हैं हम देख पा रहे है।

काफी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं उसके सामने एक गार्डन है गार्डन में काफी अच्छी धूप है आप खुद देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है सब देख के।